यहां एफ_एम_सी का बोर्ड लगा हुआ है।

यहां बगल में दो टोटो खड़ा है।

बहुत सारा स्कूटी बाइक लगा है यह स्कूटी शोरूम है।

यहां बहुत बड़ा एक फ्रिज है जिसमें बहुत सारा रंग बिरंगा केक रखा हुआ है।

बगल में दो पंखा भी है जो काला कलर का है।

बेड भी रखा हुआ है बहुत सारा कुर्सी भी है एक लड़का भी है।

यहां बीच मैदान में एक खंभा है जो बहुत छोटा है।

उसके बगल में बहुत सारा पौधा लगा हुआ है जो बहुत हरा भरा है।

यहां उपर में रंग बिरंगा फुल लगा हुआ है।

साइड में बहुत सारा पत्ता है जो हरा कलर का है।

यहां स्विमिंग पूल बहुत बड़ा पाइप रंग बिरंगा लगा हुआ है।

बतख का मुंह भी बना हुआ है जो प्लास्टिक का है।

एक आदमी है जो साइकिल चला के आ रहा है।

बगल में अविनाश लिखा हुआ है।

उसके ऊपर में बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ है।

वो काला कलर का है यहां बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है लंच कर रहा है।

यह बहुत बड़ा बुक स्टोर है यहां।

ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इ_सी_इ_इ_इ_इ लिखा हुआ है।

यहा अ बहुत सारा अलमारी लगा हुआ है बगल में बहुत सारा बोर्ड भी लगा हुआ है।

बहुत बड़ा बिल्डिंग है यहां रंग बिरंगा लाइट लगा हुआ है।

बगल में पेड़ भी है यहां पर बहुत सारा बाइक खड़ी है।

बगल में बहुत सारा कुर्सी भी है।

जो हरा भरा है यहां बगल में बहुत सारा घास है।

बगल में बहुत सारा चित्र किया हुआ लाइटिंग जल रहा है।

यहां बहुत सारा मछली रखा हुआ है मछली के ऊपर मछली है।

बगल में बहुत बड़ा पेड़ है।

बहुत सारा कुर्सी टेबुल काला कलर का है।

इसके बगल में खाने का बनाया हुआ है।

एक कमरा में बेड है।

यहां एक आदमी के हाथ में शहनाई भी है।

यह स्कूटी शोरूम है यहां बहुत सारा स्कूटी और बाइक है।

यह बहुत बड़ा स्टैंड है यहां बहुत सारा आदमी है।

एक लड़की है जो सफेद कलर का कोट पहनी हुई है।